सभी अम्म ओम शांति की दीदी खड़ी हुई हैं और सबका पूजन अर्चन सबका भगवान का स्वा --

हैरान सुनते है की गाड़ी कितने बजे आएगी और अपने-अपने --

बोहोत से लोगों को डोसा पसंद है अपनी दुकान में जाते हैं --

आ मम्म सा आसानी से उससे एं फिसल रहे हैं। बहोत ही सुंदर ठंडक वाला माहौल है।